इस चित्र के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जिसमें--

और शोपीस के नारियल पेड़ भी है बहुत सारे

और भी इंसान खड़े हुए हैं और दीवाल पर ए_सी लगे हैं फैन चल रहे हैं।

और बहुत सारी बड़े बड़े चट्टान है धीरे धीरे नीचे की ओर पानी गिर रहे हैं।

इस चित्र के अंदर पेट्रोल पंप है।

बहते हुए नदी नीचे की ओर ले--

गड़े हुए हैं रोड के किनारे और--

और टेबल पर कुछ प्लास्टिक पर पिंक कलर के कुछ पैकिंग करके रखे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर एक कार का शोरूम है यहां पे--

घर बना है पेड़ के पास बड़े से पेड़ के पास।

बहुत सारे कस्टमर इस पर बैठके कपड़े देख रहे हैं बहुत सारी साड़ियां देख रहे हैं।

नीचे जमीन पर व्हाइट कलर के टाईल्स लगे हुवे हैं।

कांच की गेट बनी हुई है।